और इसके पीछे दो बोर्ड लगा लगे हुए हैं जिसमें से एक--

और यहां पर एक बैंक बनी हुई है जिसका नाम एस_बी_आई है।

यहां पर एक आदमी डेकोरेशन कर रहा है और यहां पर बहोत सारे अलग -अलग रंग के फूल भी लगे हुए हैं।

और यहां पर दो पर्दे भी लगे हुए हैं जिनका रंग सफेद और गुलाबी है।

और इसका रंग नारंगी है और इस पर सफेद रंग से टाटा हाई-टेक लिखा हुआ है।

और इसके पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बोर्ड रखा हुआ है जिस पे जन सेवा केंद्र लिखा हुआ है।

और उसके नीचे भारत सरकार लिखा हुआ है और उसके साइड में आधार पे भी लिखा हुआ है।

और यहां पर एक आदमी ठेले पर सेब बेच रहा है और उसके पास में तराजू भी रखा हुआ है।

और यहां पर एक बाग बना हुआ है जिसमें बहुत सारे पेड़--

यहां पर एक लाल रंग का पोस्टर लगा हुआ है जिस पर पीले रंग से के_के फर्नीचर लिखा हुआ है।

लिखा हुआ है हमारे यहां सिंगल बेड डबल बेड अलमारी सोफा सेट --

यह एक दुकान हैं जिसमें मैगी मसाला भी टंगा हुआ है और शैंपू भी टंगे हुए हैं।

बहोत सारा सामान रखा हुआ है और यहां पर तीन आदमी है जिनमे से दो आदमी--

बहोत सारे ड्रॉवर बने हुए हैं जिसमें बहोत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

पोस्टर बना हुआ है जिसपे फोटो स्टूडियो एवं वीडियो शूटिंग लिखा हुआ है।

और इस ब्रिज के पीछे भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।